एक मेज पड़ा है मेज के साथ एक कुर्सी भी पड़ी है।

उसके इर्द गिर्द दिये ज़मीन पर मोमबत्तियों के साथ जल।

जिसमे बहुत खूबसूरत फूलो से साज सजावट की है।

एक बेकरी के बाहर गाड़ियों का बहोत रश है।

अंदर पूजा चल रही है कुछ लोग मंदिर के बाहर ।

पास खड़े लोग उस मरी हुई मछली को देख रहे हैं ।

दरिया का पानी नीला और गहरा लग रहा है।

दुकान के अंदर कोई ग्राहक नहीं है दुकान के ऊपर--

हाल से लाइटें लटकाई गई है लेकिन अभी लाइटें चल नहीं रही है क्योंकि दिन का वक्त है।